बाइक के पीछे काउंटर पे दो तीन लोग बैठे हुए हैं।

तालाब में ये हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं।

आपके उस पार सीमेंट से बने हुए रैलिंग्स भी है।

पीसे के अंदर पैक काफी सुंदर सुंदर गहने रखे गए हैं।

मौसम बादलों वाला किया हुआ है।

इस दृश्य को देखकर लग रहा है या तो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।

गाड़ी के टायर के पास में एक बाल्टी रखा हुआ है।

खिड़कियो पे हरे रंग के पर्दे बांधे हुए--

रस्सियों में काफी सारे बैलून्स लगे हुए हैं।

पीले कलर का टायर है उस पे ब्लैक कलर भी किया हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हैं एक हाल में कई सारे लोग बैठे हुए है।

यह एक बड़ी सी नदी है।

उसके नीचे पिलर्स है पिलर्स पे बिल्डिंग टिकी हुई है।

दरवाजे ग्रीन कलर में देखने को मिल रहे है।

क्योंकि ओस गिरती हुई दिख रही है।

सैलून के अंदर तीन कुर्सियां देखने को मिल रही हैं।

बिल्डिंग के नीचे एक कपड़े का भी घर देखने को मिल रहा है।

इस दुकान में काफी सारी किताबें रखे हुए हैं।

यह एक फास्ट फूड की दुकान है।

काफी अन्य अन्य ब्रांड के यहां पर नमकीन बिस्किट देखने को मिल रहे हैं।

ड्रिंक्स की बोतल के बगल में पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

यह एक किराना दुकान है।

दुकान के ऊपर दो मोबाइल नंबर लिखे हुए है।

ग्राउंड के ऊपर एक लाल कलर की कार--

एक लंबे से टेबल पे टॉफी और अंडे रखे हुये हैं।

चारों तरफ दीवाल से घिरा हुआ एक बड़ी इमारत है।

ग्राउंड पे कई सारी लड़कियां हैं उनके हाथों में धनुष और तीर भी है वो निशाना लगाने का अभ्यास करते हुए दिख रही है।

ग्राउंड के उस पार पीले और ब्राउन रंग के कुछ बड़े बड़े घास भी दिख रहे हैं।